बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और कुछ लोग वहां पे --

रास्ते में पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं और कुछ इंसान वहाँ पे आते-जाते हुए दिख रहे है।

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं तो बोहोत ही सुंदर तरीके से लाइटिंग फूल और सजावट के समान से --

और कुछ बड़े लोग दिख रहे हैं। पीछे एक बोहोत बड़ी हवेली जैसे दिख रही है जोकि बोहोत ही --

सामान रखे हुए दिख रहे हैं जैसे कि बोटल टिफ़िन --

कुछ हरे-हरे छोटे-छोटे पौधे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हे और सफेद रंग का घर है।

बगल में बहुत सारे बिल्डिंग घर दिखाई दे रहे हैं।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

ग्राउन्ड के बीचों-बीच भी थोड़े पौधे लगे हुए हैं। बड़ी-बड़ी लाइटस लगाई हुई दिखाई दे रही हैं।

आलू बैंगन गोभी कुछ लोग वहा उस को बेचते हुए दिखाई दे रहें हैं।

स्विमिंग पूल में बहुत सारे छोटे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं अलग-अलग तरीके --

इमारत खड़ी हुई है जोकि दो मंजिला है उसके बनने का काम च चल रहा है अगल-बगल में।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हू तो एक बोहोत सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा है। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल --

न्-ह् जमा हुआ है। बोत सारे जानवर न्-घास खाते हुए दिखाई दे रहे है।